यहाँ कोई घर के सामने बैठे है और सभी एक --

अ और यहाँ पर बाहर कुछ कपडे लगे है काफी अच्छे सारे शर्ट्स पँट्स और बच्चो के लिए--